बगल में बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है।

पीछे बहुत हरा भरा पेड़ पौधा है।

जो ढेर सारे दरवाजा हैं ढेर सारे खिड़कियां हैं।

यह एक हॉल का दृश्य है जिसमें जो बहुत बड़ा बहुत बड़ा हॉल है।

यह एक मार्बल का दुकान का चित्र है।

एक लड़का पत्थर पर बैठा हुआ है।

पीछे बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है।

यह एक फूल का चित्र है।

ईटा है बहुत बड़ा बहुत सारे मिट्टियां हैं।

ढेर सारे धुर मिट्टी हैं।

दो बाइक लगे हुए हैं।

यह एक प्रोग्राम का चित्र है।

दो कुर्सियां हैं ढेर सारे बैलून हैं।

बहोत सारे बड़े बड़े ताले है बहोत सारे चाभियां है।

एक ऑटो लगा हुआ है दो बाइक लगा हुआ है एक आदमी खड़ा है।